और पीछे बिल्डिंग अच्छी दिख रही है सामने विंडो भी है।

इसमें अ किसी स्कूल की परफॉर्मेंस वाली फोटो है जहां पे बच्चे यूनिफॉर्म में अपनी बैठी हुई--

फोटो में देख कर ऐसा पता लगाया जा सकता है कि सामने एक गाड़ी खड़ी है।

फोटो को देख के ऐसा लग रहा है कि सामने एक पार्क है और पीछे जो बिल्डिंग है वो या तो कोई होटल कंपनी ऐसे दिख रही है।

सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं।

इसे देखकर साफ पता चलता है की बगल में यह जो बिल्डिंग दिख रही है वो मंडल कमिश्नर ऑफिस की बिल्डिंग है।